ऊपर में लाइन से बहुत सारा लाइट्स भी लगाया हुआ है।

जिसमें से मछलियां रखा हुआ है।

एसर की जाली और टॉयलेट का सामान भी दिख रहा है।

हमे यहां एक फैन भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में सड़क के साइड में पपूम परे पुलिस यूपीया का चाइन रखा गया है।

सामने में में एक फैन भी दिखाई दे रहा है और एक बॉक्स आगे--

इस तस्वीर में हमें एक बहोत बड़ा सा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है।

यह हमें लोग भी बैठा हुआ दिख रहा है यहां रेड कारपेट भी बिछाया हुआ है।

और इस रूम को यहां पर मीटिंग के लिए सेट करने रखा गया है।

और अलमीरा में बहोत सारा घर को पेंटिंग करने वाला कलर सब रखा हुआ है।

दुर्गा मां एक राक्षस को मारते हुए नजर आ रहा है।

बालकनी के बाहर में बहुत सारा टी_वी का एंटीना भी लगाया हुआ है।

यहां हमें बहुत सारा खिड़की और दरवाजा दिख रहा है।

दैनिक केंद्र बहुत सारा मेडिसिंस भी रखा हुआ है सामने का टेबल में एक कंप्यूटर और जेरॉक्स मशीन भी दिख रहा है।

और सैनिटाइजर और क्यू_आर कोर्ड भी रखा हुआ है टेबल के ऊपर।

इस फोटो में हमें बहुत सुंदर सा नजारा देखने को मिलता है।

यहां शाम का समय सूरज नदी का किनारा डूबते हुए दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे हमें एक शहर का आउट डोर सीन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक ऐसा सीन देखने को मिल रहा है।

उसने एक जैकेट और हुड्डी भी पहना हुआ है।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

वॉल में फोटो फ्रेम्स भी दो ठो लगाया हुआ है दरवाजा मे भी कार्टेल लगाया हुआ है।

शहर में इस बहुत सारा ऊंचा ऊंचा और बड़ा सा बिल्डिंग लोग भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत फ्लावर पॉट्स को भी तांगा के रखा गया है।

और हमें एक दूसरा फ्लोर से नीचे का व्यू दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक स्टेशनरी शॉप का सीन देखने को मिल रहा है।